वहाँ बड़े-बड़े बाम्बूहै। लगाए हुए हैं और ले बम्बूयों को --

यहां पे हमें साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाॅं पे कार --

गेट लाइब्रेरी करके दिखाई दे रहा है और लिक्के हैं और यहाँ पे --

यहाँ एक लड़का जा रहा है। रास्ते में उसके ड उसके पीछे एक पेड़ है हरा रंग का। उसके आस पास --

दो शीशों के अंदर बहुत सारे भरे हुए रंग बिरंगे घड़ियां हैं।

लाल रंग कि सिढियां मंदिर के पीछे हम हरे रंग के पेड़ पोधे देख रह देख सकते हैं।